और दीवार में एक ड्रॉर भी बनवायी गयी है और गेट का काम चल रहा है।

यहाँ पर हमे एक जंगल दिखाई जा रहा है इसमे काफी सारे पेड़ भी उग रहे है और यहाँ पर हमे एक हाथ मे फूल भी दिखाया जा रहा है यहाँ पर जंगली पेड़ उगे हुए हैं जैसे की आप देख सकते हैं रास्ते मे बीच मे खाली जगह है।